कुर्सियों में सफेद कलर के कपड़े डाले गए हैं।

सफेद कलर की और भी ज्यादा लाइटें है लगाई गई।

इसमें से यहां पर आगे में एक पोस्टर पे लिखा है।

यह एक होटल का फोटो है जिसमें से यहां पर ए दो टेबले लगाई गई है।

ये किसी रोड के साइड में मार्केट एरिया का फोटो है।

इसमें से यहां पर एक प्लेट में डोसा और चटनी रखी गई है।

टेबल में प्लाईवुड जैसा चीज संगमरमर बिठाया गया है।

जो चल रहे हैं उधर एक स्टेज भी बनाया गया है।

इसमें से यहां पर एक पोस्टर पे लिखा है सचिन होटल ।

और नाश्ता खाना एवं ठहरने का प्रबंध है यही लिखा है।

जिसमे से यहां पर बहुत ही छात्र छात्राएं कंप्यूटर चला रहे हैं।

इसमें से आगे में पोस्टर में फूड सफेद कलर से लिखा है और--

इसमें से एक व्यक्ति है जो ऊपर चढ़ा हुआ है बांस के उठने पर--

एक व्यक्ति खड़ा होकर उधर की ओर देख रहा है।

एक व्यक्ति है जो खड़ा हुआ है रोड के साइड में।

यह एक रिपेयरिंग सेंटर लग रहा है।

इसमें से एक स्कूटी है और एक स्पोर्ट बाइक है।

यहां पर कुछ हवा देने वाली मशीने और कुछ सामान्य और भी मोटर रखी गई है।

और नीचे में इसके बहुत ही अलग अलग पौधे टांगे गए हैं और लगाए गए हैं।

जिसमे से यहां पर दो तीन बाइके आगे में और एक दो कार खड़ी है।

इस पर आगे के पोस्टर में लिखा है मेधा डेयरी रांची।